स्टेज बना हुआ है टीचर के खड़े रहने के लिए वहां स्पॉटलाइट ट्यूबलाइट लगी हुई है एक लंबी सी--

एक मॉल है जहां पे बाइक्स की पार्किंग का--

फोटो दिखाया गया है वहां ढेर सारी बाइक पार्क है।

ये पिक्चर --

बहुत सारे सपोर्ट के पिलर लगे हुए हैं एक ब्लू कलर का डब्बा पड़ा हुआ है।

बड़ा सा लंबी जगह है।

एक कार्टून पड़ा हुआ आइसकाम वहां पे लेडीज बैठी हुई है बहुत सारे कार्टूनस है।

वाइट कलर और गोल्डन कलर का डिजाइन का वॉल है।

नीचे ब्राऊन कलर की गुनिया बिछाई गई है वाइट कलर का बड़ा सा--